आगे बहोत सारे आदमी खड़े हैं इधर के साइड में बहोत सारी मोटरसाइकिलें और स्कूटी खड़ी है।

एक लाइट का खंभा है जो बिल्डिंग के ऊपर इन की तार जा रही है।